किचन स्टोर किए हुए हैं जहां पर--

एक मूर्ति और कुछ मालाये टंगी हुई हमें दिखाई दे रही हैं साथ ही बारकोड पड़ा हुआ है और लैपटॉप --

और पीछे लाइट लगी हुई हमें दिखाई दे रही है और इसको अच्छे से सजाया गया है जैसे कुछ--

उनकी बर्थडे पार्टी में जॉईन हुए हैं और--

जहां पर एक लड़की खड़ी हुई है और लड़का इसमें फोन चला रहा है और पीछे लड़की खड़ी हुई है।

यह एक खुले मैदान की फोटो है जिसमें कुछ गमले रखे गए हैं।

का बॅनर लगा हुआ है जिस पर--

और साइट पे कुछ लाइटें लगी हुई है। यह रात का व्यू है।

छोटू राम की धर्मशाला के बाहर का ये व्यू है।

अलग अलग साइज के हमें दिखाई दे रहे है और बैठने के लिए कुछ--

बड़े बड़े मार्बल जिसे हम पत्थर कहते हैं वो दिखाई दे रहे हैं।

सारा बिल्डिंग मटेरियल का सामान दिया जा रहा है।

और कुछ पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और बैठने के लिए पत्थर के--

चढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

जिसमे सामने हैप्पी बर्थडे के बलूंस लगे हैं।